यह एक भीड़ भाड़ का इलाका--

यह एक हॉस्पिटल की तस्वीर है इसमें बहुत सा--

यह तस्वीर बहोत ही सुंदर है।

यह तस्वीर किसी पूजा सथल --

पूजा करते हुए दिख रहे।

यह फोटो एक आली--

यह तस्वीर एक सुंदर सी पारक की--

यह तस्वीर रात के --

काठ का दरवाजा बनाया गया है।

पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

इसमें बोहोत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं।

प्यारे प्यारे पक्षी दिख रहे हैं।

रंगों के शो पीस दिखाए गए है।

सैलून के बाहर एक आदमी--

बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है।

लड़की का हंसते हुए पोस्टर लगा हुआ है।

यह तस्वीर एच_डी_एफ_सी बैंक की है।

इसमें एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है।